शर्ट पहने स्कूटी चलाते --

टी-शर्ट और सफ़ेद पैंट पेहेन रखी है और टोटो की कलर लाल पीले हरे --

मुझे एक चित्र दिख रही है मानो एैसा प्रतीत हो रहा है कि ये एक वाटर पार्क है जो बहोत बड़ी है और --

मुझे एक चित्र दिख रही है मानो एसा लग रहा है कि एक केक है बोहोत बड़ी और वो चॉकलेट कलर की है। उसमे बोहोत सारे --

नीबू है अना अनार है केले के गुच्छे लगे हुए हैं और ये ऑरेंज लाल --